दिखाई दे रहे है यहाँ दुकान को लाइटो से बहुत अच्छे से सजाया गया है।

यहाँ हमें एक रिसॉर्ट दिखाई दे रहा है जिसमें मैरिज पैलेस रिजॉर्ट --

इसमें हमें एक हरे कलर का शर्ट पहने एक आदमी बाहर जाते और सफेद कलर के एक शर्ट पहने --

यहाँ हमें एक दुकान दिखाई दे रही है जहां पे एक काले कलर की कार रखी हुई है।

यहाँ पे कार रिपेयरिंग का काम चल रहा है यहाँ पे कार को ओपन कर रखा गया है।